यह चित्र एक बाजार का है जहाँ ठेले रखे हुई है ठेले पे काफी सारे सब्जियां रखी हुई--

बिजली के तार दिख रहे है पीले रंग के प्लास्टिक दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं जिनका रंग--

यह चित्र एक जगह का दिख रहा है जहा नीचे की ओर टाईल्स लागे हुए--

इस चित्र में एक मकान दिखाई दे रहा है इसके आगे बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है लाल मिट्टी दिख रही हैं।

जहा हरा फर्श रास्ते मे दिखाई दे रहा है बड़े सुन्दर हरे पर्दो से सजा हुआ दिखाई दे रहा है ।